यहां पर बहुत सारी लड़की दिखाई दे रही है और उन्होंने लाल सफेद और गुलाबी कलर की फ्रोक पहने हुए है सबने सफेद और लाल कलर का टोपा भी पहना हुआ है।

बहुत सारा गार्डेन सजा हुआ दिखाई दे रहा है जिन पे बहुत सारे फूल दिखाई दे रहे हैं।